एक सैलून हो सकता है और दुकान के किनारे-किनारे हरा कलर का मेट चिपकाया गया है।

और जे. सी. बी. ट्रेक्टर सब है।

यहाँ एक बड़ा सा रोड भी है पेट्रोल टंकी के बगल में घर भी है।

लाल कलर का दिख रहा है और कुछ कपत्ती रंग बिरंगे पत्तियां हैं।